सामने एक लड़का है उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां औरते बच्‍चे जो हाथ में मोबाईल लेके फोटो खीच रहे है ।

सामने दो पेट्रोल टंकी की मशीनें लगी हुई है। ऊपर छत हैं।

सामने में ग्रिल नजर आ रहे हैं गेट हैं।

कुछ लिखा हुआ है जो स्‍पष्‍ट नज़र नही आ रहा है।

सामने टेबल पर कुछ खाने की वस्तुएं हैं एक ग्लास में कुछ शेक जैसा रखा हुआ है।